यह किसी पेट के शोरूम से फोटो लिया गया है जिसमें काफी सारे जानवरों का समान दिख रहा है।

कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यह फोटो किसी खाली प्लॉट से लिया गया है।

जिसमे दो जालीदार गेट दिख रहे हैं।

यह फोटो ऐसा लगता है कि यह किसी लाइब्रेरी से लिया गया है।

इस फोटो में अलग अलग अलमारी में लाइन से काफी सारी किताबें और फाइलें रखी दिखाई दे रही है।

यह कोई संस्था या अस्पताल जैसा लग रहा है।

और बाहर कुछ कपड़े एक तार पर सूख रहे हैं।

जैसे डोंगे गिलासी और इत्यादि चीज।

और कुछ गुब्बारे और कुछ फूल लगे हैं।

यहां काफी सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े मंदिर भी दिख रहे हैं।

इनके सामने कुछ मूर्तियां रखी हैं जैस--

जीसमें अलग अलग बॉक्सों में कुछ दवाइयों के डिब्बे रखे हैं।

साइड में दीवार पर काला कलर हो रखा है।

और दीवार पर एक पोस्ट भी लगा है जिस पर--

यह फोटो किसी खाद बीज वाले की दुकान से लिया गया है।

और बाहर दवाइयों के भी काफी सारे पोस्टर हैं जिन पर अलग अलग--

जिसमें कुछ बच्चे अपने अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

से अभी पन्नी भी नहीं उतरी है।

और छत सफेद कलर की है।

जिसमें कुछ महिला और कुछ पुरुष कुर्सियों पर बैठे हैं।

ये किसी मिस्त्री की दुकान लगती है।

और कुछ और भी हरे हरे पेड़ एक बाउंड्री बनाकर लगाए गए हैं।

उन्होंने अपने नीचे तीन चादर बिछा रखी हैं।

उसके मुंह को ब्लर किया गया है।

यह फोटो शीशे से खैचा गया है।

और कुछ जिम की मशीनें रखी है।

इसमें कई सारी कुर्सियां और एक छोटी सी मेज दिखाई दे रही है।

और छोटा दीवाल पर मंदिर भी लगा है।

मॉल के अंदर काफी भीड़भाड़ भी दिखाई दे रहे--

इस फोटो में एक सफेद कलर का बड़ा घर दिख रहा है।